ये एक कपड़ों की दुकान है कपड़ों की दुकान के अंदर अलग अलग अलमारीयों में बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं कपड़ों का रंग--

जिसके गले में हरे रंग की रस्सी बांधी हुई है उसके आगे चारा पड़ा हुआ है।

जिसके ऊपर लोहे की छत पड़ हुईं है छत पर लाइट जग रही है और छत से नीचे बहुत सारी कारें --

कार ब्लैक व्हाइट कलर की हैं पिलर्स लगे हुए--

के हैं दीवारें हैं वाइ --

ये एक स्टेज है स्टेज के ऊपर एक लड़की खड़ी हुई है।

जे एक घर की फोटो है घर के अंदर का मु--

पिंक सा नजर आ रहा है कुछ--

जो कि ऐनक की दुकान है।

कमीज उसने पहनी हुई हैं मोर पंखिया कलर --

और गमले भी पड़े हुए हैं बहुत सारे लाल और व्हाइट रंग--